यहां पर एक रोड है और यहां पर एक जीप खड़ी हुई है।

लाइट लगी हुई है और बैलून --

ये तीनों अलग अलग साड़ी में डांस कर रहे।

यहां पर यह एक औरत भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो पर्स टांगे हुए हैं और उसके थोड़ी दूर पर भी एक औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

जहां पर ग् घासें भी बनी हुई दिखाई दे रही हैं। ओ कई सारे पहाड़ यहां पर से दिखाई दे रहे।

एम_जी के जस्ट बगल में ही होंडा का शोरूम भी दिखाई दे रहा है और उसके बाहर टोयोटा की कार खड़ी हुई दिख रही है।

ऊपर से एक आदमी साइकल से जाता हुआ दिखाई दे रहा--

यहां पर कई सारे पर्दे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की तरफ एक पोस्टर भी लगा दिख रहा है जो एक आदमी टायर को धक्का मार रहा है।

यहां पर कई सारे मशीनें भी लगी दिख रही हैं।

यहां ऊपर फूलों की वरमाला लटकती दिख रही है।

बाहर की तरफ कई सारे ईंटे और घास पड़े दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर टी_वी इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता--

यह एक फैक्ट्री जैसा बना है यह फैक्ट्री है ये--

इधर घास पास है यहां कूड़ा भी पड़ा है इधर पेड़ भी लगे हुए हैं।

व्हाइट टिने से बनी हुई है।

और यहाँ पे टेबल भी लाइन से लाइन से चेयरें भी रखी हुई हैं।

इधर गमले रखे हुए है डस्टबिन भी रखा हुआ है।

मकान भी बना है जीने भी है।

बहोत मस्त लग रहा है पिक्चर उधर बीच में रोड बनी है।

नी भरा हुआ है यह एक डी जैसा है।

वाइट है इसके ऐसे अंदर जाते हुए जीना है।

यह एक मेट्रो स्टेशन का दिखाया जा रहा है जहां पर कई सारे लोग अंदर जा रहे हैं।